एक पुतला लड़के का दिखाई दे रहा है जिसने लाल रंग का टी शर्ट और जींस पहना है।

तस्वीर में एक छोटा सा पुल दिखाई दे रहा है लकड़ी के तकते दिखाई दे रहै हैं।

तस्वीर में लोहै की अलमारी तथा रैक दिखाई दे रहै --

उसने लाल रंग की कैप वाली टी-शर्ट पहनी दिखा--

जमीन दिखाई दे रही है एक सूखा हुआ पत्ता दिखाई दे रहा है।

छत दिखाई दे रही है नीले रंग के बोर्ड में जिओ लिखा दिखाई दे रहा है।

लाल रंग की बॉर्डर दिखाई दे रही है एक वेंटीलेटर दिखाई दे रहा है एक सफेद रंग के बोर्ड में --

तस्वीर में एक छत बनती हुई दिखाई दे रही है जहां कुछ मजदुर काम करते हुए दिखाई दे रहै--